इनमें बहोत सारे तुम्बे रखें हुए हैं अलग अलग डिजाइन के।

छोटे छोटे पत्थर साइड में पड़ें हुए हैं और कुछ प्लास्टिक की नाव लकड़ी की नाव भी दिखाई दे रही है।

इसमें कुछ पेपर्स भी रख के लकड़ी को पेपर से ढक रखा है।

गार्ड खड़ा हुआ है नीचे गेट के और एक व्यक्ति मुस्लिम है।